मुझे यहाँ पर जीप दिखाई दे रही हैं मुझे यहाँ पर हेलमेट दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर बहोत सारे इंसान दिखाई दे रहे हैं।

आसमान दिखाई दे रहा हैं जो सफेद कलर मे हैं मुझे यहाँ पर एक पेड़ दिखाई दे रहा हैं हरा-भरा हुआ हैं मुझे यहाँ पर उस पेड़ मे पत्ते दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर बस दिखाई दे रही हैं मुझे यहाँ पर बस पर कुछ लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा हैं।

बहुत सारी लड़की दिखाई दे रही है जो कुर्सी पे बैठी हुई है मुझे यहाँ पर कुर्सी दिखाई दे रही है जो बहुत सारा--

मुझे यहाँ बहोत सारा पानी दिखाई दे रहा हैं मुझे यहाँ पर पानी मे एक पत्थर दिखाई दे रहा हैं मुझे यहाँ पर एक इंसान दिखाई दे रहा हैं।